नदी में बहोत साडी नाओ खरी हुयी दिखाई रही हैं। एक नाओ का सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसमे छब्बीस नंबर डला हुआ दिख रहा है। घाट काफी दूर तक दिख --

कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे ऊपर की तरफ दो च-चौकोर गुंबज और उसके ऊपर एक गोल गुंबज बना हुआ नजर आ रहा है।

बाल्कनी के सबसे ऊपर वाले हिस्से मे एक गोलाकार बिल्डिंग के ऊपर अंदर एक मूर्ति दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक स्टार और एक क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है| इस बिल्डिंग मे ऊपर से नीचे तक लाइट झूलती हुई दिखाई दे रही है और कुछ चमकीले रिबन भी लगे --

इन कुर्सियों के अगल-बगल दोनों साइड गोल-गोल खंभे बने हुए दिखाई दे रहे हैं जिस पर कुछ फूल और कुछ लाइट्स लगी हुई हैं कुछ ऊपर की तरफ झूमर भी लटकते हुए भी नजर आ रहे है जिन पर लाल लाइट लगी हैं।

गेट के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने कुर्ता पजामा पहन रखा है बगल में छोटा सा ऑटो भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।